मेरे सामने काफी खुबसूरत नजारा दिख रहा है और सामने एक वैली है और मुझे लगता है कि ये पार्क बना हुआ है वैली के सामने और हरा-भरा काफी है।

और केकड़े भी हैं तो अगर आप जीव हत्या कर भी रहे हैं तो आप सुमलित करे ताकि किसी को ये प्रभावित भी ना करे।

दृश्य में दिख रहा होगा कि अ काफी बुजुर्ग व्यक्ति और महिलायें खाने का लुफ्त उठा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे समारोह का या है पर ये देख कर अच्छा लग रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति और महिलायें हैं |

और इसका लुफ्त पूरा विश्व उठता है। खासकर भारत के लोग और मेरे भी मुँह में देखकर पानी आ गया है।

और कागजात सारे रखे होते है तो काफी पुराना दृश्य है और अ अच्छे दौर है की पुराने कागजात संभालकर सरकार द्वारा रखा जाता है।

गाँव का नजारा ऐसा लग रहा है कि बहता हुआ नदी और किनारा और ब्लैक एंड वाइट में दिखाया गया है तो मैं ये कह सकता हूँ साफ सुथरा पानी जो गांव का माहौल होता है वो काफी --

ट्यूबेल कॉलोनी चौराहे में और काफी अच्छा दृश्य है।